पेड़ दिख रहे हैं एक झूला दिख रहा है नीचे की ओर एक हरे रंग की हरियाली घास दिख रही--

ये चित्र एक बस स्टेंड का दिख रहा है जहाँ सामने की ओर एक बस खड़ी हुई है काफ़ी सारी चेयरे रखी हुई --